यहां पर एक बहोत बड़ा रूम है जो कि व्हाइट कलर का है।

स्विच बॉक्स भी है जो की वाइट कलर का है।

यहां पे एक बैनर है जो कि व्हाइट कलर का है और उस पर ड्रिंकिंग वॉटर प्रोजेक्ट और बहुत कुछ लिखा हुआ है।

दूर मे हमें बहुत बड़ा बड़ा बिल्डिंग भी दिखाई दे रहा है।

और कुछ लोग हैं जिनका चेहरा भी क्लियर नहीं है।

ऊपर में दो लोग दिख रहे है जिनका चेहरा क्लियर नहीं है।

यहां पर बहोत सारा फ्लैग लगाया गया है जो की अलग अलग कलर का है जैसे ऑरेंज ब्लू व्हाइट ये सब कलर का।

ग्राउंड मे बहुत सारा ग्रासेस है जोकि ग्रीन कलर का है।

यहां पर बहोत बड़ा सा नदी है और इसका किनारा में बहोत बड़ा बड़ा पत्थर है।

और बहुत सारा गार्डन जो कि पूरा ऊपर टीना और सीमेंट से बनाया गया है।

यहां पर मुझे तीन घर दिख रहे हैं जो की पूरा का गोल्डन कलर का है।

एक दुकान है जहां पे बहुत सारा खाने पीने का सामान का बिक्री हो रहा है।

यहा पे एक सीढ़ी भी है जो कि पूरा का पूरा लोहा और सीमेंट से बना हुआ है।

ये अभी अलग अलग कलर का है जैसे व्हाइट ग्रीन येलो और ग्रे और बहोत कुछ --

इसलिए उसके खाना भी रखा गया है।

यहां मुझे एक दुकान दिख रहा है जोकि पूरा का पूरा सीमेंट से बना हुआ है वो भी व्हाइट कलर का --

वो थोड़ा डिस्कलॉर हो गया उसपे क्रैक भी आ गया --

और बहोत सारी खिड़की भी है जो की पूरा शीशे से भरा हुआ है।

दूर में मुझे एक फेंसिंग दिख रहा है जो कि जो कि पूरा ऊपर सीमेंट का बना हुआ है व्हाइट और ब्लैक कलर का।

यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा तालाब है।

जो की थोड़ा ब्राउन और ब्लैक कलर का है और उसपर बहुत सारा घास उगा हुआ है।

ये थोड़ा पुराना हो गया है इस पर बहोत सारा अल्गे लग गया--